मंदिर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जोकि--

दुकान काफी बड़ी है और टायर को ठीक करने की मशीन भी पड़ी है।

सामने एक स्कूल दिखाइ दे रहा हैं।

और दूसरी साइड भी छोटे छोटे--

और साइडों पर भी दो मूर्तियां है इन पर गोल्डन कलर का पेंट किया हुआ हैं।

और कुछ जानवर भी इधर उधर--

पीछे फूलों की डेकोरेशन की हुई--

कैप लगाई हुई है और ऑरेंज कलर की जाकेट पहनी है।

दो का एक कार और एक जीप खड़ी है जीप के ऊपर पीले रंग की पल्ली से--

क्रीम कलर का पेंट किया हुआ है।

सामने एक घर दिखाइ दे रहा है घर का गेट --

सामने कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर कुछ कुछ क्यारियां बनाई हुई है।